ये एक पार्क है जहां में दो बच्चा खेला खेल रहे हैं।

अंदर में बहुत ज्यादा सामान रखे हैं।

दो विंडो है एक दरवाजा जो है।

यहां में तीन आदमी क्रिकेट खेल रहे हैं बाल बहुत ज्यादा है।

साइड साइड में बाउंड्री है।

कोई कोई मछली को पकड़ रहे हैं।

उसका आगे में ड्रम भी है।

एक दुकान है ये एक उ दो आदमी है एक ब्लू पहेन के और एक रेड पहेन के।

ऊपर में एक फैन लगा के हैं।

सेवन में एक दो ब्लैक पहन के है फिर दो जो व्हाइट पहन के हैं।

यहां में काम कर रहा है वो लोग एक दो चार आदमी काम कर रहा है।

सोफा है उसमें रेड कलर का पिलो रख के है साइड में एक फूल फ्लावर रख के है।

रखे हैं फिर मेकप समान हैं।

से बनाया वाला वाल में है ड्रायर लगाके।

ए बास्केट में सामान भी रखे हैं।

टंगा के है रेड कलर का येलो कलर का ब्लू कलर का--

यहा में ऊपर में पंखा भी लगा के लाइट आके के है।

व्हाइट कलर का टेबल है उसपे रखें हैं।

ये एक क्यू_आर कोड है जहां में बी_एच_आई_एम यू_पी_आई लिख के--

एक दुकान के आगे में हैं दो कार एक बाइक और आदमी लोग भी बहुत ज्यादा हैं।

और साइड में एक टेबल है वहां पे भी सामान लोग रेड कलर का रखा हुआ है।

वहां पे गाना और आदमी लोग बैठके दिखाई दे रहे--